एक डब्बा है जिसमें एक आदमी चड्ढी पहने हुए हैं।

एक एकेडमी है जिसमें काफी सारी शील्ड है और बच्चे नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं स्टील की जाली दिखाई दे रही है।

एक लड़का दा एक दुकान है जिसमें नीचे टाइल्स लगे हुए हैं एक आदमी चेयर है काफी बड़ी चेयर है उसपे वो कवर डाले हुए हैं।

एक गार्डन है गार्डन में एक पतली जाली लगी हुई है कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

एक अस्तबल दिखाई दे रहा है अस्तबल के अंदर दो घोड़े एक घोड़ी दिखाई दे रहे हैउसमे--